और नीचे कुछ पेड़ पौधा दिखत रहा--

आ इ फोटु मे सामने लिखत रहा पंकज ट्रेडिंग कंपनी नीचे काफी सारी गाड़ियां खड़ी है।

आ इस फोटो में सामने एक बोर्ड लगत रह।

काफी बड़ा बिल्डिंग दिखत रहा जोकि पीले रंग का है।

चेयर रखा है और सरस्वती माता का तस्वीर भी रखा है।

और यहां पर काफी सारे लोग स्टेज पे चढ़ा हुआ है लड़कों ने कोट पैंट पहना है।

और काफी सारा जो है बाहर रखा है मि--

एक लड़का है जिसने सफेद रंग का शर्ट पहनत है।

फरस पर काफी सारे कंकड़ और पत्थर दिख रहे हैं।

झूला दिखत रहा काफी सारी सीढ़ी है।

अ इस फोटू में सामने डब्बे रखत रहे लिखा है एक तो लाइफबॉय हैनिटाइजर सैनिटाइजर रखा --

कुछ काले रंग के डब्बे हैं उन पर लिखा है चोको चिप कुकी --

हरे रंग का लोवर पहना है ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है।

इस फोटो में काफी सारे लोग खड़त रहे। एक बैग पडक रहा काफी सारी लड़कियां बैठे है।

पेड़ पौधे दिखत रहे दो लड़कियां दिखत रही।

हां इस फोटू में काफी सारे कार दिखत रहे।

और दिन का समय नजर आ रहा है।

जिसमें एक लड़का सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखत रही और बाहर काफी सारी कार बाइके के और एक्टिवा दिखत रही।

बोर्ड लगते रहे और लिखा है।

सफेद और ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहनत रहा--

और यहां पर काफी सारा खान पीन का चीज दिखत रहा--

नीचे हरे रंग का कॉर्बेट बिछा हुआ दिखत राहा।

अलग अलग रंग के कपड़े दिखाते रहे कुछ पीछे डब्बे दिखाते रहे जो कि ब्राउन कलर के हैं।

हा इस फोटू में काफी सारा समान दिख रहा--

और यहां पर चेयर दिखत रही।

और सामने लिखा है सो मनी बाथ वेयर ।

एक आदमी है जो फोन लेके खड़ा है।

दो जो मंजे हैं वो लाल रंग के दिखत रहे पीछे तीन चार हैं और है जो नीले रंग के दिखाई देत रहे।

इस फोटो में सामने एक पीले रंग का टैंट दिखाई देत रहा कुछ लोग बैठे दिखाई देत रहे।

और यहां पर मिठाइयां दिखत रही।